सामान यहां पे पड़ा हुआ है और--

और बहोत ही सुंदर तरीके से यहां पे--

और बड़े बड़े वृक्ष भी लगे हुए हैं सामने और सड़क जा रही है बहोत ही सुंदर लग रहा है बहोत ही अच्छे तरीके से यहां पर सब सब चीजे सजाई हुए है।

येह मोबाइलोंकी दुकान हैं बहुत सारा समान यहां पे रखा हुआ हैं।

किताबों की दुकान जोकि बहोत ही बड़ी है और हर तरह की किताबें यहां पे रखी गई है।

और एक आदमी भी बाहर खड़ा है।

बहुत ही अच्छे तरीके का यहा पे समान जो की रखा हुआ है और बहुत ही सुंदर लग रहा है काफी अच्छा लग रहा है और --

लगी हुई हैं और बहोत ही अच्छा यहां पे--

और उस पे यहां पे सोडे की बोतल रखी हुई हैं अमूल रखा हुआ है और बक्से लगे हुए हैं काफी अच्छे--

लग रही है और टायर बहुत ही अच्छे बनाए हुए हैं और।

यहां पे देखने को लग रहा है और अच्छा भी यहां पे--

प्रधानमंत्री आरोग्य का बोर्ड है और यहां पे एक टंकी भी दिख रही है गाड़ी दिख रही है।

और अच्छा लग रहा है देखने मे सुंदर भी लग रहा है।